गुलाब के फूल देख रहे होंगे कते मस्त है और ये ग्रीन पत्ती भी देख रहे होंगै और पीले कलर का जो कुछ रखे होंगे देख रहे होंगे आप और ब्लू एक चद्दर सा रखा है।